सामने एक पिंजरा दिखाई दे रहा है जिसमे कुछ घड़े रखे हुए है और एक तोता के स्टेच्यू भी रखा हुआ है और आस पास कई सारे घड़े रखे हुए है।

एक नीले और वाइट कलर का है और आस पास कई सारे बड़े पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है।

सामने एक बहुत बड़ी सी नदी दिखाई दे रही है जिससे किनारे किनारे बहुत सारे छोटे छोटे कंकड़ पत्थर दिखाई दे रहे हैं और कुछ पक्षी या नीचे चल रही है और पास में ही एक पक्षी नदी में तैर रही है।